और बड़ा सा पेड़ लगा है आसमान दिखाई दे रहा है कुछ आदमी बैठे हैं।

एक बड़ा-सा झरना दिखाई दे रहा है ऊ पत्थर हैं बड़े-बड़े हरे पेड़ दिखाई दे रहे है।

एक बड़ा ग्राउंड हैं जिसमे बहोत सारी पेड़े ही दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ा सा जंगल दिखाई दे रहा हैं जिसमे बहोत सारी हरी घास दिखाई दे रही है बहोत सारी--